रेस्टोरेंट में सी स्ट्रॉबॉक्स । पूरा आदमियां बैठे हुए खाना खा रहे हैं और बीच में ब्यूटीफुल सी लग रही है देखने में लाइटें जल रही है।

और बांस का दिवाल बांस का दिवाल बना हुआ --

अमर ज्योति के प्रलीए सी ट्वेंटी-टू डेली सर्विसिंग ।

देखने में कितनी अच्छी लग रही है ये --